--ओर एक बहुत बड़ा स्टेज है स्टेज का फर्श लाल रंग ओर पीले रंग का दिखाई दे रहा है वही पर कुछ बच्चे स्टेज पर लेते हुए हैं।

यहाँ पर एक छोटा-सा मैदान है जहाँ पर एक दीवाल है दीवाल का रंग सफ़ेद है दीवाल के पास एक आदमी बैठा हुआ है।

जो लाल रंग का है वहीं तीन स्टूल भी रखे हुए है जो नारंगी रंग के है चबूतरे के नीचे दो पोस्टर भी रखे हुए है जो सफ़ेद और हरे रंग के दिखाई दे --